यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

सारे पेड़-पोधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और य --

यहाँ पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

नीचे ज़मीन भी दिखाई दे रही है।

वहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है।

और ऊपर आशमान भी दिखाई दे रहा है।

त्रिशूल भी बने हुए हैं।

कुछ खम्भे वैगरह भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़-पोधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

का कलर वाइट है और --

वो उसकी सीट भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे छत पे एक पानी की टंकी भी रखी हुई है जिसका कलर ब्लैक है।

उसके उपर कुछ डब्बा वगैरह भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।